अ पार मुझे पेड़ दिखाई दे रहें हैं जो की गीन कलर के हैं।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

पीछे की तरफ मुझे एक दीवार दिखाई दे रही है जो की वाइट कलर की शो हो रही है।

ऊपर की तरफ मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है और सामने मुझे मिरर दिखाई दे रहा है।

अ ऊपर की तरफ मझे एक अ ट्यूब लाइट दिखाई दे रही है जो की जल रही है ।

इस पिक्चर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

जिस पर काफी सारे फोटोस लगे हुए हैं।

पीछे मुझे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहेब की है ।

सामने की तरफ मुझे खिड़कियाँ दिख रही है जिनमे पर्दा लगा हुआ है।

पिंक बैनर में लिखा गया है होम डेकोर इसमें काफी सारे होम डेकोरेशन के प्रोडक्टस पड़े हुए है ।

जिसमे एक आदमी दिख रहे है जिसने ऑरेंज कलर का टीशर्ट पहना हुआ है।

आस पास मुझे पत्थरो से बानी बॉउंडरीस दिखाई दे रही है बीच बीच में मुझे ऑरेंज कलर के खम्बे भी दिखाई दे --